एक चित्र दिखाई दे रहा है जोकि एक शॉप का है।

रंगोली का कलर ऑरेंज ग्रीन व्हाइट है जो कि बोहोत सुन्दर लग रहा है।

बोर्ड लगा हुआ है विद्यालय का। मुज़्ज़फरपुर नगर भी लिखा हुआ है उस बोर्ड पे। ब्लू कलर का बोर्ड है।

कीबोर्ड माउस रखा हुआ है। यहाँ पे एक पेन पेपर भी रखा हुआ है और स्टेपलर भी नज़र आ रहा है।

और कच्ची सड़क है और घास -वास भी दिखाई रहे हैं यहाँ पे और एक ठेला लगा हुआ है।

इस चित्र में एक छोटी सी लड़की दिखाई दे रही है जोकि पुतला है और --

एक चित्र नजर आ रहा है जोकि बोहोत सुंदर दिख रहा है। यहाँ पर एक ऑटो है।

ऊँचे-ऊँचे पहाड़ जैसे भी दिख रहे है और साफ़ आसमान भी दिख रहा।